यह एक महाविद्यलाय स्कूल है जो की --

जो फोटो इस पर रखा हुआ है इसका का गाड़ी नंबर बी आर जीरो एक जी --

आस-पास तरह-तरह के बगीचे है।

यह एक बहुत बड़ा मंदिर है जो की आगे से बहुत सुन्दर लग रहा है देखने में।

स्टेज बना हुआ है जो की बहुत सुंदर लग रहा है देखने मम देखने में।

यह एक बैंड बाजा है जो की इसमें हौरन बॉक्स इत्यादी समान रखा हुआ है।